पीछे में ऑयल रखा हुआ है बगल में मसाले मसाला रखा हुआ है।

पर उसको बनाने के लिए टाइल्स का प्रयोग किया गया है जिसका कलर बरा--

इसे इस्लाम धर्म में मस्जिद कहते हैं।

हरा लाइट के साथ येलो लाइट भी लगाया हुआ है।

जिसका फर्श टाइल्स द्वारा बनाया गया है।

सामने में एक पेड़ है।

इसमें लहंगा और कुर्ता भी मिलता है।

शेरवानी भी मिलता है एवम् सामने में पार्किंग किया हुआ स्कूटी हैं बाइक है बगल में बहुत सारी दुकानें है।

यह एक रूम का दृश्य है।

इसका कलर रेड है उसके ऊपर में एक बोतल रखा गया हैं।

टी शर्ट के टी शर्ट रेड कलर का है।

टाइल्स के ऊपर एक ब्लू कलर का मैट बिछाया गया है।

किताब दुकान के फ्लोर टाइल्स द्वारा बनाया गया है।

इसका फर्श टाइल्स द्वारा बनाया गया है।

बहुत सारी पिलर भी है जिसमें व्हाइट कलर का ब्लैक कलर का सिल्वर कलर का टाइल्स लगाया हुआ है।

और टब का कलर रेड है।

यह एक बहुत बड़ा पार्क का दृश्य है।

यह एक जिम सेंटर का दृश्य है।

खेत में बहुत सारे पौधे नजर आ रहे हैं।

यह एक पौधा का दृश्य है।

बहुत सारी बाइक भी खड़ी है।

और इस कॉलेज का नाम एस_टी पॉलस कॉलेज है।

यहां एक मेन गेट लगाया हुआ है।